खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

वॉटर टैंक भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में बड़ा सा एक ठो ग दिखाई दे रहा है।

एक जी_सी_बी भी दिखाई दे रहा है।

ये रूम में एक बिस्तर दिखाई दे रहा है।

और दीवार पे वाइट कलर का ए_सी टंगा के है।

और ईटा बालू ये सब इकट्ठा करके रखा हुआ है।

ओ साथ मे बड़ा सा एक बिल्डिंग है।

और ऊपर पे तीन चार ठो लाइट ऑन करके है।

और बाहर में ब्लू कलर का ड्रम दो ठो रखा हुआ है।

और मिडिल में वाइट कलर का फ्रिज रखा हुआ है।

और पहाड़ का आगे में बहुत सारा घर है।

बहुत सारा डब्बा भी रखा हुआ है।

ब्लू कलर का पोल्स बना के रखा है।

और घर का ऊपर में फ्लैग टंगा के है।

और लाइट जला के रखा हुआ है।

एक पिक्चर में दो ठो घर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

और एक इंसान स्कूटी उठा के है।

और रोड के साइड में एक बाइक पार्किंग करके है।

बहुत सारा पेड़ लगा के रखा है।

लाल कलर का चेयर तीन ठो दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में बहोत सारे इंसान लोग काम करके है।

और दीवार पर एक फ्रेम लगा के रखा है।

पिक्चर में ब्लू कलर से बनाके एक आईना है।

एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

ई पिक्चर में व्हाइट शर्ट पहन के एक इंसान खड़ा होके है।